ऊपर लाइटें जलती दिखाई दे रही है।

नीचे कुछ कंकड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

घर काफी पुराना दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

ऊपर में कारपेट वाली छत दिखाई दे रही है।

और एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है।